यहाँ पर कोई स्टेज शो हो रही है और काफी सारे चेयर लगा हुआ है लोग बैठे हुए हैं बैलून लगा हुआ है इसके अंदर काफी मस्त और इसके बाद इसपे पंखा भी काफी अच्छी लगी हुई है।

और बहोत सारा फ्लावर भी है।

पौधे में फूल भी लगे हुए हैं।

और ये स्टील का कुछ बन --

यहाँ पे लड़की लोग काफी एक्सरसाइज कर रहे हैं काफी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे ए.सी. भी लगे हुए हैं ट्रैक लाइट भी लगे हुए हैं फैन भी लगे हुए हैं और काफी --